एक लड़के ने टोपी पहनी हुई है और एक लड़के के हाथ में मोबाइल फोन है।

हां बड़ी सी चट्टान है जिसके ऊपर घास उगी हुई है और यहां एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

इसने रेड रंग की टी शर्ट पहेने हुए है और हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है।

यहाँ ईटे भी दिखाई दे रहे हैं और यहां कुल पांच आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में रोड पे एक इको कार दिखाई दे रही है।

इस चित्र में नारियल का पेड़ दिखाई दे रहा है और बिजली का खंबा भी दिख रहा है।

एक दीवार पे स्विच भी लगा हुआ है और कुछ पतीले भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक पावर हाउस है जिसके बाहर एक बिजली का खंभा है जिस पर तीन तार लगी हुई है।

यह एक जंगल है और यहां पांच हिरन दिख रहे हैं।

एक हिरन एक बॉक्स में से कुछ खा रहा है और यहां एक गाड़ी का टायर भी गिरा हुआ है।

सारे हिरणों के दो दो और बड़े सिंह है और यहां बहोत से पेड़ दिख रहे हैं।

इस चित्र में बहोत छे टाइल्स दिख रही है और सामने एक खिड़की भी दिख रही है।

यहां सामने रफ़ पीछे लिखा हुआ है और इन टाइल्स पे बहोत ही अच्छे अच्छे डिजाइन की गई--

वहां एक फुहारा भी दिख रहा है जिसके पास एक झाड़ू रखा हुआ है।

यह एक घर है उसके सामने बड़ा सा गेट है।

और वहां घर के पार्किंग में वाइट कलर की कार खड़ी है।

यह ए_सी भीं लगी हुई हैं जिसके नीचे ये स्विच भीं लगा हुआ हैं।

और वहां दीवार के पास एक गमला रखा हुआ है।

गैराज की दीवार पे रजवाड़ी सैमसंग आई फोन ओप्पो और वीवो लिखा हुआ है।

और यहां सामने बड़ा सा गेट भी दिखाई दे रहा है।

कुछ आम पके हुए और कुछ आम कच्चे दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक मोल दिखाई दे रहा है जिस पर साइ लीला मॉल लिखा हुआ हैं।

एक व्हाइट एंड रेड रंग की कार पार्क हुईं हैं और कुछ बाइक भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।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

इस रूम में सोफा कुर्सी वाइट रंग की रखी हुई है।

यह एक केबिन का चित्र दिखाई दे रहा है।

एक टेबल के ऊपर और एक टेबल के नीचे रखा हुआ है और टेबल के नीचे सात बजे लिखा हुआ है।

इस चित्र में एक खेत दिखाई दे रहा है और खेत के पीछे एक पहाड़ दिखाई दे रहा है।

खेत में धान उगाया हुआ है और खेत में पानी भी दिखाई दे रहा है।

समुद्र के अंदर एक नाव दिख रही हैं जो की लकड़ी की बनी हुई है।

यह मंदिर पूरा वाइट पत्थर से बनाया गया है।

एक आदमी हाथ में पैसे लेके बाहर आ रहा है।

यहां बहुत अच्छे स्केच पेन दिखाई दे रहे हैं और यहां कुछ फाइल्स भी दिखाई दे रहे हैं।

पीछे पौधे दिखाई दे रहे हैं और सामने एक घर भी दिख रहा है।

चित्र के पिछे के साइड में एक घर दिखाई दे रहा हैं।

वहां नीचे बहुत से ईंट पत्थर गिरे हुए हैं।

उसके उस पार तीन चार बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं।

यह एक संगीत क्लास का चित्र दिखाई दे रहा है।

सामने दीवार पे एक बड़ा सा पोस्टर लगा है जिनमें सरस्वती माता का फोटो भी दिख रहा है।